और पीछे बहुत सारे झाड़ियां है।

यहां बहुत सारे मूर्ति का चित्र है।

देख रहे हैं बैंक की तरफ और कुछ बाइक खड़े हैं।

और एक दुकान ओपन है।

और सीढ़ी का कलर ब्लैक है।

यह एक लाइब्रेरी का चित्र है।

और पीछे कुर्सियां लगे हुए हैं।

इसके बाहर बहुत सारे कपड़े टांगा हुआ है।

एंड फ्लोर पर जाने के लिए और कुछ टेबल लगे हुए हैं।

ये एक दुकान का चित्र है जो एक व्यक्ति बैठे हुए हैं।

और स्कैनर रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति है जो ब्लैक कलर का बैग और वाइट कलर का शर्ट पहने हुए--

वेस्टर दिख रहे है इधर और व्हाइट सीमेंट का ईटा भी दिख रहे है।

रेड कलर का भी ईटा दिख रहा है और कुछ मशीने है।

एक हॉस्पिटल का चित्र है।

एक व्यक्ति भी है जो बाइक का हैंडल पकड़े हुए है जो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुए है।

और कुछ बोटल में समान एवं चॉकलेट वगैरा रखे हुए हैं।

यह एक दुकान का चित्र है।

और एक स्टैंडर्ड चेयर दिख रहे हैं।